दो येलो फ्लावर पॉट्स रखा हुआ दिखाई दे रहा है उसी टेबल पर --

इस तस्वीर में मुझे एक--

मुझे इस तस्वीर में एक सलोन का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

और सामने में एक लकड़ी का टुकड़ा--

टेबल पर स्टील के डब्बे भी रखा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक पहाड़ दिखाई दे रहा है।

चार आदमी भी बैठा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक काला गाड़ी दिखाई दे रहा है।

और दुकान दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में दिया जलाने का स्टैंड दिखाई दे रहा है।